जमीन पे ढलाई के काम हो रहे है जमीन पे छड़ बिछी हुई है।

देख सकते है एक लेडिस डॉक्टर व्हाइट कलर के कोट पे है और एक वाइट कलर की शर्ट में एक डॉक्टर है ब्लैक कलर के कोर्ट में वाइट डॉक्टर है सभी गरीब आदमी यहाँ मेडिसिन लेने के लिए आ रहे है।

काफी सुन्दर से पेड़ पौधे लगा हुआ है चर्च बाहर से देखने में अच्छी लग--

यहाँ बिल्डिंग ढलाई के काम शुरू करने के लिए यहाँ पर लकड़ी बिछा हुआ है जमीन पे।